और बहोत सारे बच्चे पार्क में बैठे हुए हैं।

यहां पर एक बहोत बड़ी--

सुंदर सा ग्राउंड है और यहां पर कु--

यहां पर एक ब--

बहुत बड़ा बुक सेंटर है और बहुत सारे लोग खड़े--

रहा है यहां पर ले--

पिक्चर में यहां पर --

हमें नजर आ रही है यहां पर एक--

और पीछे पेड़ दिख रहे हैं।

रहा है ये एक--

नजर आ रहा है यहां पर एक--